और एक टेबल जो है वो खालिए पड़ी हुई है जिसपे प्लेट व्हाइट रंग की चम्मच ग्लास रखे हुए हैं।

एक गमला है उसमें पेड़ लगा हुआ है ऊपर की ओर लाइट और पंखा लगा हुआ है सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

टाइल्स लगी हुई है ऊपर की ओर एक आदमी जाता हुआ दिख रहा है।

किसी पठारी भाग का दृश्य है जो लटकता हुआ पत्थर दिख रहा है।

इसी के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हैं।

काली रंग की टी शर्ट पहन के सेल्फी ले रहा है ये कोई गुफा का पॉइंट है।

ऊपर की ओर आप देख सकते हैं पीपल का वृक्ष लगा हुआ है।

एक समान भी पिछड़ा पड़ा हुआ है एक डॉगी सो रहा है।

ये लखनऊ में हजरतगंज में शोरूम है कलकत्ता इन स्टाइल के नाम से है।

मने की ओर से एक दरवाजा है जो भूरे रंग का है ऊपर तीन पंखे लगे हुए हैं।

बैलून लगे हुए हैं जो बैलून लगे हुए हैं वो पीले नीले हरे गुलाबी लाल रंग के हैं।

कई सारे बोरे में सामान सब्जियां रखी हुई हैं हरी धनिया ये सारी चीजें हैं।

एक रिक्शा वहीं से गुजर रहा है इनकी शॉप में लाइट सफेद रंग से लगी हुई है।

सीट पे बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ ड्रेस में हैं कुछ सिविल ड्रेस में हैं।

सामने की ओर से एक गेट लगा हुआ है दो तीन मशीनें यहां पे रखी हुई हैं।

ये सफेद रंग का पेंट हुआ है इसमें ऊपर नीली लाइट लगी हुई हैं इस पे साइनपोल्स लिखा हुआ है।

इसमें एक काले रंग की पन्नी है जिसके ऊपर कुछ गमले रखे हुए हैं इसमें छोटे और बड़े पेड़ रखे हुए हैं कुछ बड़े गमले हैं उसमें बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

जो बिल्डिंग इस है इसमें हरे रंग की ये पेंट है।

ऊपर की ओर पिलर है जो ग्राउंड फ्लोर है।

ये किसी घर का दृश्य है जहां से एक आदमी नीली टी शर्ट पहन के अंदर कि ओर जाता हुआ दिख रहा है।